वहाँ पे पर खिड़की है ब गाड़ी है ।

बिल्डिंग है ।

उसमे रखा हुआ है ठंडा पंखा --

पार्क है झूलवा उल्वा लगा हुआ है | झूलवा मे --

इधर में सुखा हुआ मछली है बाघी मछली है बोयारी है आदमी सब है ।

एने कहा ते नदी मे पोखर में पानी है चारो तरफ से गाछी है।

फूल के नीचे पूरे पानी नदी है ।

केकरो घर बना हुआ है छत ढला रहा है मिस्त्री लोग अपन खड़े हो कर --

आदमी लोग खड़े हैं ।

महाविद्यालय के नू कहाँ होगा हम ना जनित ही |

नीचे धरती मे पे कारपेट बिछा हुआ है लाल कलर के |

झूमर है काला कलर पा पर्दा है नीचे मे धरती --